सामने एक स्कूल की बिल्डिंग है स्कूल की बिल्डिंग तीन मंजिल की है।

बस स्टैंड है इस बस स्टैंड पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।